किया गया है। छोटी छोटी लाइट्स भी जलाई गयी हैं। पेड़ के नीचे काफी पुतलें सुन्दर सुन्दर भगवान की मूर्ति की तरह दिख रहे हैं।

देखने से लग रहा है कोई स्टेज परर्फोमन्स की तैयारी कर रहा है।

इन लोग के मास्टर का नाम प्रिंस होगा।

हर साइड में घास और पेड़ उगे हुए है।

ये स्टेशन अभी पूरी तरह खाली है।

और आदमी बैग भी लिए बैठा है।

बच्चे जो है गोलाकार में अपने पैर रख के सावधानीपूर्वक चल रहे है।

लोग काफी भीड़ में है और क्रॉस का सि चिन्ह बना हुआ है सफ़ेद रंग का ये बिल्डिंग है।

काफी चेयर्स लगे हुए है चेयर्स को नकाब भी पहनाया गया है सफ़ेद रंग के नकाब --